पार्ट का आधा मैदान बिना घास के लग रहा है जबकि आधा मैदान घास से--

यह समारोह मुख्य रूप से नाचने का हो सकता है।

उसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि कागज के कप रखे हुए हैं।

उसने तौलिया ओढ रखी है उसके चेहरे पर कुछ लेप लगा रखा है।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

यहां पे लाल रंग की कुर्सियां पड़ी हुई है जिन पर ये आदमी बैठे हुए हैं।

ये प्राचीन स्थल है जिसमें तीन प्रवेश द्वार दिखाई दे रहे हैं।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

दूसरा आदमी भी उसके साथ ही खड़ा हुआ है दोनों आदमियों ने टी-शर्ट पहन रखी हुई है एक ने हॉफ पहन रखी है एक ने फुल पहन रखी है।

और मैट का रंग जो है इन्होंने हरा रखा हुआ है।

इसमें कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है तीन लाइटें हैं जो की जल रही है।

वह एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बैठे हुए है सिमटकर बैठे हुए है आपस में।